यह एक मुंबई का तस्वीर है कन्हेरी केव्स कन्हेरी।

यह भगवान बुद्ध का तस्वीर है जिसमें आशन पे एकान्त मुद्रा में बैठे हुए है उनके पीछे दो सेवक उनके खड़े है।

हाथ में पंखा लिए जो भगवान बुद्ध को पंखे से हवा खिला रहे है।

यह एक जंगल का तस्वीर है जहाँ पेड-पौधे लगाए गए हैं।

बहुत ही सुंदर तस्वीर है इसमें प्रकर्तिक सुंदरता को दिखाया गया है एक तालाब के आस-पास बहुत सारे पेड़-पोधे को है जो प्रकर्तिक सुंदरता बड़ा रही है।

यह एक बहुत ही सुन्दर फाइव स्टार होटल है जहा के गार्डन बहुत ही हरा-भरा है दो-चार व्यक्ति आ-- होटल के गार्डन में बैठ के आपस में बात कर रहे है।

जैन धर्म के संस्थापक भगवन महावीर का यह तस्वीर है जैन धर्म की हिंसा करने का अनुमति नहीं है।

पूर्व नंगा अवस्था में है उनके साथ उनके बहुत सारे प्रतिबिंब बनाए गए हैं।

मंदिर के गेट बाहर पे इंतज़ार कर रहा है।